और मिट्टी दिखाई दे रही है जो येलो कलर का है और कुछ छोटे छोटे पत्रे दिखाई दे रहे है ब्लैक कलर की है और एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है जो--

या हमे खेत दिखाई देरा है जो ग्रीन कलर का है और कुछ मिट्टी कलर की दिखाई देरी है और सामने एक बड़ी सी पाइप दिखाई देरी है।

येलो कलर का है और एक गमला दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का कुछ छोटे छोटे पौधे लगे हुए है।

यहां हम एक रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है पीला है।

यहाँ हमे एक घर दिखाई दे रहा है जो क्रीम और ग्रे कलर का है और--

कुछ गमले दिखाई दे रहे है मिटी फैला रखी है और सामने कुछ खम्बे लगे हुए है ब्लैक कलर की--

और एक पाइप दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का और कुछ मशीने दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की है और ब्लू कलर की है।

यहा हमे एक बड़ी सी कार दिखाई दे रही है वाइट कलर की है और इसके सीसे दिखाई देरा है जो वाइट और ग्रे कलर का है।

मैरून कलर है और कुछ बॉर्डर लगी हुई है रेड कलर की जिसमे वाइट कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और कुछ छोटे छोटे पेड़ पोधे दिखाई दे रहे है घासें दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की और कुछ बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है ग्रीन कलर के।

और कुछ गमले दिखाई दे रहे है जो मीठी कलर का है और इसके --

यहां हमें घर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का है इसके दरवाजे का कलर ब्लू है और कांच का कलर व्हाइट है।

यहा हमें एक बड़ी सी माल दिखाई दे रही है वाइट कलर का है इसमे ठेर सारी वाइट कलर की छोटी छोटी लाइटे लगी हुई है और कुछ कपड़े दिखाई दे रहे है और कुछ मशीने दिखाई दे रही है।